बड़े बड़े डब्बे हैं इनमें बहोत सारा सामान धरा है।

यडे एक ऑफिस दिक्खे है इस ऑफिस में सारे आदमी बैठे हैं।

इस ऑफिस में बहुत सारी कुर्सी धरी हैं बहुत सारे बड़े बड़े सोफे लाग रहे हैं।

इसमें बहोत सारी डाले है सब डाल की सरसों का तेल धरा है।